घर का क्षेत्र में प रूम दिखाई दे रही है।

नीचे में एक बड़ा स्टेचू लगाके रखी है।

एक लड़की के फेस में कुछ ढक के देख रही है।

घर का ऊपर में टीना लगाया है घर का सामने में ब्लैक कलर का एक ठो साइकिल पार्क करके रखा हुआ है।

फेविकोल नजर आ रही है।

उसका ऊपर में राखी बंधन लटका के रखा गया दिखाई दे रही हैं पैकेट में भी दिखाई दे रही हैं।

उस पार में पहाड़ भी नजर आ रही है।

अंदर में एक स्टैचू दिखाई दे रही है।

यहाँ मुझे एक दो लड़का दिखाई दे रही है घर भी दिखाई दे रही है।

साइड में बहोत ज्यादा जंगल नजर आ रही है।